यहां पर दो छड़ दिख रहे हैं तथा यहां पर रेलिंग बनाया गया है।

ईंटों की मदद से बनाया है।

यहां पे बहोत सारे आदमी दिख रहे हैं।

यहा पर बहोत अलग अलग के लाइट लगे हुए है।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

यहां पर बहोत सारे पत्थर भी दिख रहे हैं।

यहां पर एक काउंटर भी दिख रहा है जो कांच के मदद से बनाए गए हैं।

बिल्डिंग का कलर भुरा एवं क्रीम है।

यह एक बिल्डिंग बनने का दृश्य है यहां पर बहुत सारे आदमी आए हुए हैं।

यह एक मजार का बाहर का दृश्य है जहां पर मजार को इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है।

यहां पर दो नाव भी दिख रहे है एक नाव लकड़ी के मदद से बनाया गया है।

बिल्डिंग का कलर व्हाइट एवं मेहरून है।

यहां पर एक पोस्ट भी लगा हुआ है एवं यहां पर दीवाल में कुछ लिखा गया है।

यहां पर एक बाल्टी भी दिख रहा है तथा यहां पर गाड़ी का कलर ब्लू एवं व्हाइट है।

डब्बा में बहुत सारे चॉकलेट रखे गए हैं।

यहां पर बहोत सारे पेड़ भी दिख रही है।

यहां पर एक स्कूटी भी है एवं वहां पर एक कार भी दिख रहा है।